इस पहाड़ पे बहुत सारी प्रतिमाए है पर सबसे बड़ी प्रतिमाए गौतम बुद्ध भगवान की है।

गया कॉलेज गया का बहुत नामी और अच्छा कॉलेज हैं यह सरकारी कॉलेज हैं इसमें आपको कम पैसे लिए जाते हैं।